मस्ती भी कर रहे है और दिख भी रहा है रेड कलर की कोई कोई ड्रेस भी पहने हुए है और अच्छा दिख रहा--

ऊपर एक टीन का कुछ चढ़ा हुआ है जिसपे वो नीचे छाए है और एक पेड़े पेड़ है और एक रॉड दिख रही है जिसमे ब्लैक कलर का पैंट है।

इस चित्र में एक मंदिर जैसा है मंदिर के दो तीन स्तम्भ जैसे दिख रहे है बगल में एक टावर है।

और इसमे कुछ ग्रीन कलर की और भी पेड़े है और नीचे एक रोड है और थोड़े आगे एक आदमी खड़ा हुआ है।

और सम्थिंग ब्लू कलर की चैयर है जिनका कलर है और असम्म बड़ा फर्श--

यहाँ एक रूम है रूम में एक बेड है बेड पर एक आदमी की हड्डिया है और उसके आस-पास कुछ दवाइया है पास में ही एक खिड़की है जिसपे पर्दा लगा हुआ है।

और वहाँ पे कुछ घर हैं और इसपे एक जंगल सी दिख रहें हैं कुछ पेड़ें लगे हुए हैं ग्रीन - ग्रीन कलर के और ऊपर आसमान है।